सीट जैसा बनाया गया हो ठीक सामने पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है सामने--

ये सडक है सड़क दो रंग कि है।

हाथी पर एक बच्चा बैठा हुआ है हाथी के ठीक सामने बहोत दूर दूर तक पेड़ पौधे है बहोत सारे लोग यहाँ पे हैं।

फूल बलाओ से सजाई गई है दुकान में बहुत सारी चोटियाँ बिक रही हैं जो बालो में लगाई जाती हैं।

नीचे गाय को बांधने वाली रस्सी भी है सामने एक बाइक भी है।

दिखा गया है बगल में भी खम बिजली के खम्बे पर भी आगे पीछे कर के बोर्ड लगा हुआ बिजली के खम्बे के सामने एक घर--

फोर वीलर खड़ी हुई हे फोर वीलर फोर वीलर वाइट कलर की हैं।

टेम्पू के बगल में पेड़ दिखाई रे पेड़ के बगल में दीवाल है दीवाल में दरवा--

खाने वाला न रखा गया है एक व्यक्ति बैठा है व्यक्ति का हाथ दिखाई दे रहा है।

सामने पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं बहुत दूर दूर तक ऊँची ऊँची इमारतें भी दिखाई दे रही हैं।

ऊपर से आसमान दिखाई दे रहा है पाइप ठीक थोड़ी देर बगल में छत भी दिखाई दे रहा है।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

छट जैसे या कुछ खड़ी की गई है दोनों तरफ खड़ी की गई है पीछे व्यक्ति के ठीक सामने दो अ फोर व्हीलर हैं दो नो फोर व्हीलर व्हाईट कलर की है।

बीच में टंकी भी बनी हुई है जो पानी में चारों तरह से घिरी हुई है बहुत सारे टंकी है यहां पे।

वाइट कलर की है ऊपर विलर के ठीक सामने कई मोटर साइकिल खड़ी हुई है मोटर साइकिल ब्लैक कलर है मोटर साइकिल के ठीक बगल में --

और प्लांट जेसे पोधे लगे हुए हैं पोधे के ठीक बगल में--

मूर्तियों को सजाया गया है रंग बिरंगे फूलों और रंग बिरंगे कपड़ों से इसको सजाया गया--

सब प्लांट लगे हुए है प्लांट बहोत सुंदर दिखाई देते है प्लांट के व पोधे के बगल में--

ऊपर से निचे तक खिड़की के दरवाजे दिखाई देरे हैं।

और बल्ब भी लग रहे हैं जिससे प्रकाश भी आ रहा हैं।

एक फॉरविलर है फॉरविलर के सर्विसिंग के लिए सुर्विस सेण्टर में ले जाया गया है एक यक्ति है जो सुर्विस कर रा है फॉरविलर की--

उपर भी लगी से कुछ समान निकाला जा रहा है जिसको टांगने के लिए उपर मशीन लगी है मशीन में --

यहां बहुत सारे लोग बच्चे यहां बैठ कर अपना अपना वर्क कर रही हैं।

पे एक व्यक्ति के पीछे एक कुर्सी भी है कुर्सी पे कुछ समान रखा गया है।

चारो तरफ से बहुत खुला आसमान हैं खुला खुला लगरा हैं।